ये एक है छोटा-सा बहुत ही अच्छा घर है जो की ग्रीन कलर का बहुत अच्छा पेंट किया है।

ये यहाँ एक बहोत बड़ा घर है जो की गेट बंद है। बच्चा भी --

और यहां बहुत लोग घूमने आते हैं। पिकनिक मनाने आते हैं हम लोग भी जाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा--

यहाँ बहुत लोग बस से जाता है। बहुत अच्छा आता है बस में बहुत सुविधा मिलता है।

इस दुकान का सामान भी बोहोत अच्छा लगता है। खाने में भी अच्छा लगता है।

लड़की है जो कि डांस कर रही है। इसका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत --

यहाँ बहोत लोग काम कर रहे हैं बहोत लोग का बेरोजगार रोजगार मिल रहा है इस फैक्ट्री से बहोत अच्छा फैक्ट्री है यहाँ।

यहां सब लोग पढ़ने जाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई होता है हम लोग भी जाते हैं बहुत बड़ा इस स्कूल है केंद्रीय विद्यालय समूह।